जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं तो एक बहुत बड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं तो एक दुकान दिखाई दे रहा है। दुकान मे बोहोत सारे अलग-अलग चीजे --

जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूं तो एक बोहोत ही बड़ा अ भवन दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ यहां पर रास्ता है रास्ते के अगल-बगल में बहुत सारे घर और दुकान दिखाई दे रहे हैं रास्ते के बीच में बहुत बड़ा --

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूं तो एक बोहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। नदी के अगल-बगल में --

कुछ पेड़ वहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे हरियाली दिखाई दे रही है।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

सब लोग नाव चलाते हुए --

पेड़ और पौधे लगे हुए है।

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो एक बोहोत बड़ा घर् दिखाई दे रहा है जोकि नया बना हुआ गया है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।